यह पिक्चर काफी बड़े समुद्र की है।

ये पिक्चर एक कंस्ट्रक्शन साइट की है।

तरह-तरह की कॉपीस् हैं कलरस् है पेन है पेंसिल है वॉटर बॉटल भी है।

टेबल क्लॉथ से वो काफी खूबसूरत लग रही है।

माले ताज़े लग रहे है।

इनमें काफी सारे लोग टेबल चेयर्स पर बैठे हुए हैं।

और उसके पीछे एक बाइक लगाया गया है।

और कुछ फोटोस ले रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक --

इस पिक्चर में डॉक्टरस के कैंप दिखाया जा रहा है।

और दूसरा प्लेयर बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है।

जोकि बड़ी है और अभी नई-नई बनी है।

इस पिक्चर में काफी सारे लोग मिट्टी पे खड़े हुए हैं।